और यहां पे डिजाइन बनाये गये है।

फ्रेम बनाया गया है यहां में दीवार पर एक--

म्यूजिक सिस्टम दिखाई दे रहा है।